यह यहाँ सब कोई बैडमिंटन खेल रहे हैं।

जिसके बगल में बहुत ही बड़ा पहाड़ है जो काफी अच्छा व्यू आ रहा है हमें और यहाँ पे काफी लोग जाते होंगे घुमने के लिए और यहाँ पोखरा में नहाने के लिए काफी अच्छा है।

ज्यादा तालाब रहने से लोगो द्वारा सिचाई उससे करते है।

लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है और यह नदी में बहुत मछलियां रहती होंगीअनेक प्रकार की मने मछलियां रहती होंगी।